फोटो को काफी अच्छी तरह से खींचा गया है और नीचे की जो फरशिंग है।

इस पिक्चर को देख के लग रहा है कि ये किसी ए_टी_एम या फिर कॉफ़ी शॉप की--

पब्लिक भी मतलब यहां से वहां घूम रही है और देखने में--

रेस्टोरेंट की फोटो है जहां पर लोग बैठकर अपना मेल इंजॉय कर रहे हैं।

पड़दे वगैरा भी लगाए गए हैं ये मुझे लगा रहा हैं कि जनरल वार्ड हैं यहां पर अह मरीजें अह सॉरी न नरसे अपने मरीजों के लिए--

पिक्चर की जो क्लैरिटी है वो देखने में काफी साफ है और पिक्चर में देख पा रहा हूं कि ये एक--

यहां पर ढेर सारे अह कुर्सी वगैरह लगी गई हैं और एक लाल रंग का कार्पेट भी बिछाया गया है।

पीछे एक गनेश जी की मूर्ति भी जो जिस तरीके से लगाई गई है वो काफी अच्छी लग रही है ऊपर की जो लाइटनिंग है वह देखने में भी काफी अच्छी लग रही है।

है और पीछे सेल सेल सेल सेल लिखा गया है।

पिक्चर की जो क्लेरिटी है वो काफी अच्छी तरीके से खींची गई है।

इस पिक्चर में मुझे दिखाई दे रहा है कि ये एक रोड के सामने की फोटो है जहां पर अ गाड़िया ढेर सारी खड़ी हुई हैं।

आ मतलब मॉडल बनाया गया है ताकि ऐसा डिजाइन हम लोग दोबारा बना सके--